यह एक बाइक का एजेंसी हैं और यहां पे बहुत सी बाइक खड़ी की गई हैं और इस बिल्डिंग मे--

यह एक स्कूटी की एजेंसी हैं और यह पे बहुत सी स्कूटी खड़ी की गई हैं ।

और पूरे स्कूल को वाइट कलर से पेन्ट किया गया है और स्कूल मे बोहोत सी वायरिंग किया गया है और इस के साइड -साइड मे बल्ब लगाए गए है।

यह एक स्कूल है और इस स्कूल को पीले और स्काई कलर से पेन्ट किया गया है और --

ये एक दुकान है और इस दुकान के अंदर बोहोत सा कुछ प्रोडक्ट रखा गया है और इस --

और इस रोड पे के साइड में कुछ मकान बनाए गए हैं और इस रोड के साइड में ही कुछ करेंट का वायर ले ले जाया गया है।

और स्कूल पे ब्लैक कलर का दो गेट लगाया गया है और स्कूल को पीला और हरा कलर से पेंट किया गया है।